यहाँ एक गार्डन पार्क दिखाई दे रहा है इसमें घास दिखाई दे रही हैं।

कुछ लोग खड़े हुए है बाइक दिखाई दे रही--

ये गार्डन दिखाई दे रहा है इसमें रोड बानी हुई है रोड का कलर येलो और रेड दिखाई दे रहा हैं।

हम्म हे एक पीले कलर की फर्श दिखाई दे रही है एक वृक्ष दिखाई दे रहे है खंभा दिखाई दे रहा है ऊपर सोलर पैनल दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा हैं ।

पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है इसमे का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है मशीन का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है कार खड़ी हुई है इसका कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है बाइक --

एक मैदान दिखाई दे रहा हैं कोई बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं बिल्डिंग का कलर सफ़ेद दिखाई दे रहा है हरी घास दिखाई दे रही--